ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसके पीछे की तरफ हमे एक बहुत बड़ी लाइट टेबल दिखाई दे बिजली के पिलर दिखाई दे रहे है।

यह फोटो एक मंडी की फोटो है यह फोटो जो फोटो खींची हुई है जिसमें हम देखते सामने बहोत सारी --

वही हम सामने देख सकते हैं यहां पर पास में हमें एक बड़ व्यक्ति दिखाई दे रहा है कैसे आगे का बोर्ड है जो ब्लैक कलर का है?

ठेकदारों से कहे हुए इन भाषा में एक बड़ी मशीन दिखाई दे रही है।

यह फोटो हिरण की फोटो है जो की पानी के दलदल में खड़ा हुआ है सामने उसके एक बड़ी दीवार है वहीं पीछे की तरफ हमारी --

यह फोटो एक स्वीट्स दुकान की फोटो है जहां पर हम देख सकते हैं ये दुकान की बाहर की फोटो है वहां ही हमें पास में कुछ का--

यह फोटो किसी संस्था के बाहर की फोटो है जहां पर हम देख सकते हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं जोकि किन्हीं एक तरी लगाकर बैठे हुए हैं जहां में महिलाएं भी साथ बै --

यह एक फोटो आदिवासी मंदिर की फो--

लौकी खीरा वहीं हमे सामने दुकानदार भी दिखाई दे रहा है जोकि ये यह व्यक्ति ओस सब्जी के बारे में बता रहा है।

यह फोटो एक मोर की फोटो है ये मोर पक्षी है जो भारत राष्ट्रीय पक्षी है तथा ये अभी अपने पंख खुला कर नाच रहा है।

दुकान के अंदर की फोटो है यहां तथा हम देख सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा गाड़ियों में वाले --

तथा एक व्यक्ति जो की फोटो ले रहा है और सामने हमें एक बड़ी सी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट भी दिखाई दे रहा है जो किसी प्रोजेक्टर पर बात चल रही है।

यह फोटो एक ग्राउंड की फोटो है जहां पर देखिए फोटो रात में खींची हुई फोटो है सामने हमें ग्राउंड के अंदर लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रहे है वही पास में हमे कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।

में लाइटें जली हुई दिखाई दे रही हैं इसको यूरोस इकोनामी यंग'एस वर्कशॉप --

ये फोटो किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी की फोटो है जिसमें हम से ज्यादा अच्छे तरीके से घर को सजाया हुआ है बैलून --

यह फोटो एक मंदिर की फोटो है जिसमें हम देख सकते हैं कि सामने संत कुछ महात्माओं की फोटो लगी हुई है वहीं सामने में तेजा जी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

कुछ व्यक्ति हैं जो कि इनको देख रही हैं एक व्यक्ति है जो बिछे हुए कपड़ों को सेल कर रहा है यह किसी कपड़े की दुकान की फोटो है।